जैसा कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारी गाड़ी रखी हुई हैं।

जै जैसा कि आप देख सकते हैं यहां काफी गाड़ियां रखी हुई हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक बिल्डिंग है।

जैसा कि आप देख सकते हैं--

बहुत बड़ी दो टंकियां रखी हुई हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां बहुत बड़ा एक ग्राउंड है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते है यहां एक बहुत बड़ा--

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक--

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक--

बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पर काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पर एक बहुत बड़ा--

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे--

जैसा कि आप देख सकते हैं--

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक बहुत बड़ी--

जैसे की मैं बता सकता हूं कि यहां एक--

मैं बता सकता हूं कि--

एक बहुत बड़ा मंदिर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।